एक पेड़ हे ऊपर नीला आसमान हे वीटो की दिवार हे और बोहोत सारे पेड़ हे ।

पीछे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हे तो कुछ बैठ के हे छत पे बहुत सारे छोटे - छोटे लाइट्स लगेहे एक झुम्मर लगा हुआ हे नीचे अ रेड कलर का कार--

कुछ झाड़ियां नजर आ रही है कुछ ग्राउंड में सूखी घास नजर आ रही है। विमान का कलर वा व्हाइट और रेड --

यहाँ पे दो आदमी छोटे से गाड़ी पे ग्रैनाइट का बड़ा टुकडा ला रहे हे पीछे दो आदमी खड़े हे एक एंट्री गेट बड़ा सा नज़र आ रहा हे ।

जिससे वो कंक्रीट की फोड़ रहा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहनी है बाजू में उसकी दो हथोड़ीयां रखी हुई है कुछ रस्सी भी रखी हुई है उसकी वायर भी दिख रही है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जहाँ पर कुछ कोचिंग के बोर्ड नज़र आ रहे है बाजु में एक छोटी सी खिड़की नज़र आ रही है एक बॉलकनी भी नज़र आ रही है।

बाजु में एक छोटी सी खिड़की नज़र आ रही है जिसको सलाखे लगाई हुई है यहाँ पर एक दरवाजा खुला हुआ है बाजु में कुछ कलर्स नज़र आ रहे है।

एक ऑटो भी नज़र आ रहा है बाजू मे एक छोटा सा ठेला भी नज़र आ रहा है उसके बाजू मे भी एक बिल्डिंग नज़र आ रही है ऊपर से बहुत सारी वायर नज़र आ रही है।

बाजु में एक छोटा सा घर भी नजर आ रहा है। एक अदमी नजर आ रहा है। एक वाइट कलर की फोर व्हीलर नजर आ रही है।

बाजू में एक बोर्ड पे वाइट कलर और ब्लैक कलर और रेड कलर का लिखा हुआ है।

और वहां पे रेड कलर के कुछ फ्लावर किए गए हैं बस के ऊपर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।